एक आपको इस मे आदमि भी दिखाई देगाजो आदमी का जो शर्ट का कलर हैंवो रेड हैं और इस फोटो मे आप देख सकते हो कि कुछ बंजर भूमि हैंऔर इस मे अरब पर देखोगे कुछ वाईट कलर का कुछ इस मे बना हुआ हैं।

इस फोटो में आप देख सकते हो की एक नदी के ऊपर एक बहुत बड़ा जहाज है।

तुम्हें देखें कि कुछ झरना आपको दिखाई दे रहा है झरने में पानी आता होगा दिख रहा है पानी के अलावा इसमें आप देखोगी कुछ नीचे पानी जाते हुए दिख रहा है और इसमें जो पानी का कलर है वह व्हाइट--

ये खुस वाडे पेड़ भी दिखाई दे रहे है इसमें जो पानी है वोह काफी साफ सुथरा है पानी के जो किनारे है वोह भी आप देख सकते हो कि मुझे काफी बड़ा ग्राउंड ऐसा कुछ दिखाई दे रहा हैं। जो देखा --